इस तस्वीर में एक आदमी हमें पत्थर के ऊपर एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठा नजर आ रा है।

और हमें लाइट जलती हुई दिख रही है अंदर दुकान में--

और जार रखे हुए दिखाई दे रहे हैं बिस्किट है उनके अंदर।

तस्वीर में हमें हरी हरी घास दिखाई दे रही है।

हमें पार्क लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हरे रंग के बोर्ड पर और वहां गेट काला लगा है।

एक नीला और सफेद अ दो जगह शेड बना हुआ है एक छोटा और एक बड़ा --

भीड़ नजर आ रही है हरे रंग का नीचे कालीन बिछा है।

तस्वीर में हरे-हरे पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं हमें--

दो बाइकें खड़ी हुई नज़र आ रही हैं और बाहर की जगह हमें खाली दिखाई दे रही है।

हम एक आदमी खड़ा और दो लड़के दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए हैं।

जाती आती दिखाई दे रही हैं और खड़ी भी हैं।

तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं कुर्सी और टेबल लगे हुए हैं।

आदमी भी एक बैठा हुआ दिखाई दे रहा है अंदर--

द चिल्ड्रन बुक गैलरी लिखा हुआ दिख रहा है हमें--

और हमें गाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है।

तस्वीर में पानी भरा हुआ हमें दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में हमें पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं हरे-हरे--

अ मुखलाल इंटरमीडिएट महाविद्यालय--

तस्वीर पे एक आदमी बना है जिसका चेहरा हमें नहीं दिख रहा--

और भी है आगे तक लोग दिखाई दे रहे हैं।

एक लाल मंदिर बना हुआ नजर आ रहा है।

हमें दिखाई दे रहे हैं बीच में बहुत सारे हिरन--

इस तस्वीर में हमें कारपेट बिछा दिखाई दे रहा है।

छत में लाइटें लगी हैं और पंखे लगे हुए हैं।

और एक महिला और एक आदमी खड़े होकर वहां फोटो खिंचवा रहे हैं।

तस्वीर के अंदर हमें भीड़ दिखाई दे रही है।

और आसपास बिल्डिंगें हमें बनी हुई दिखाई दे रही हैं।